कुछ कुर्सियां रखी हैं दीवार में बड़ी एल_सी_डी भी लगी है।

पोस्ट भी चिपके हुए हैं। पार्क में एक लाइटें भी दिखाई दे रही है।